पर जिम है जोकि बहुत अच्छे एक बड़ी सी जिम है। यहाँ पे बहुत अच्छे से फैसिलिटी दी गई है। फुल्ली ए.सी. प्लस बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ पे लगी है जोकि अच्छे से बॉडी बनाने के लिए हेल्प करती हैं और इस जगह पे बहुत अच्छी से अपनी बॉडी को ग्रोथ कर सकते हैं।

यहाँ पे बहुत सा अच्छा घर है। जहाँ पे घर के आगे ताड़ के पेड़ लगे हुए हैं। ये बहुत ही अच्छे से नारियल के पेड़ हैं। जो की --

आगे में काउंटर होता हैं जहाँ पे लोग आते हैं और आपने करते हैं जो कि माने कुछ भी पूछना रहता यहाँ से पूछ सकते हैं और बता सकते हैं। यह एक होटल का रिसेप्शनिस्ट है और इस जगह पर बहोत सारे लोग आ सकते हैं। बारह बजे से लेके दो बजे तक।

यहाँ पर एक अच्छा सा डिज़ाइन का घर है। जहाँ पर ये स्पोट अच्छे से लगाया हुआ है। यहाँ एक भूत नया तरह का रेलिंग है जो इस घर में और इस अच्छे से जगह पर लगाया हुआ है। यह घुमती साफ सुथरी जगह पे है।

पेंसिल ड्राइंग जैसे बहुत ही अच्छे से एक सामान के लिए यहाँ पर बिक रहें हैं। ये सब सामान यहाँ बहुत ही अच्छे है।